ठीक है और यहां पर एक बहुत ही बड़ा गेट लगा हुआ है।

ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं और ये यहां पर एक तंबू भी है जिसका कलर जिसके ऊपर चादर बिछी है नेवी ब्लू कलर की।

सिक्स ऐट नाइन एट थ्री नाइन और इसका कलर वाइट है और यहां पर एक ट्रेन भी खड़ी है जैसे उनके ऊपर तारे भी--

आदमी है और एक लेडिस हैं यहां पर बहोत ही स्टेयर्स बनी हुई है ऊपर एक--

क्यूब में सर्कल में ट्रायंगल में--

यहां पर तीन सोफे लगे हैं भाई ऑफ व्हाइट कलर के सोफे के ऊपर कपड़ा है।

फोर्टी पर्सेंट ऑफ है यहां पर एक ए_सी लगा है यहां पर बहुत ही सुंदर लाइटें --

और फ्लावर्स बतख और शंक आदि भी मिलते है बहोत सारी मूर्तियांज पड़ी है।

एलिमेंट है और एक घोड़ा है और यहां से पैसे निकाले जाते हैं।

और यहां पर एक मकान है जिसका कलर व्हाइट है और यहां शीशे का भी वर्क किया हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे व्हीकलस खड़े है व्हीकल का कलर ऑरेंज व्हाइट है और कार का कलर ब्लैक है।

और यहां पर शीशे की गेट भी लगे हैं।

यह एक टैक्स है जहां पर राजस्थान से पंजाब--

और बहोत सारे वेहीकल्स हैं बस भी हैं कार है ट्रक है।

ये एक गली है या मेन रोड है जिसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के नीचे भी गली है जहां एक पोस्टर लगा स्वच्छ स्वच्छता--

वच्चन दो हजार बाइस में घर पर भी ले--

जिसके चर्च अंदर के अंदर बहोत सारे लोग हैं।

बहोत ही बड़ा मकान हैं जिसके अंदर कमरे--

और यहां बहोत सारी दुकानें लगी हुई है पीछे--